यह सब बकरियाँ हैं। यहाँ पर बहुत सारी बकरियाँ और खस्सियाँ रखी गयी हैं। उन लोगों को चाना दिया जा रहा है।

यही है। यह नदी में भी बहुत सारी मछलियां रहती हैं और यहाँ पर --

लोग काफी अच्छा गाना गाते हैं। और इनका गाना हमलोग काफी --

यहाँ पर काफी आदमी लोग आकर बैठे हुए हैं। बहुत सारे कुर्सियां लगे हुए हैं।

आ आह पर बोहुत सारे जानवर रहते हैं जू में। य का यह बाघ टाइगर काफी खतरनाक होते हैं। यह जंगली जानवर होते हैं।